बहुत सारा नदी और रेलिंग झील तालाबे दिखाई --

यह प्रतियोगिता बनाया गया है |

तिरपाल-उरपाल से सजाया गया है यहाँ पे बहुत सारा।

लगता है यहाँ पे पूजा वूजा होता होगा यहाँ पे बहोत सारा अच्छे से सजाई गई है।

उधर जंगल भी दिखाई पड़ रहा है और कुछ --

बांधा हुए है रेड कलर का कमरा है और बाँधे हुए है।

यहाँ पर बहुत सरे लोग कर रहे है।

जो रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है सभी वाइट है।

दो फोटो बड़े से दिखाई दे रहे है एक व्यक्ति हाथ पकडे हुए है एक व्यक्ति हाथ --

पे फोन की नजारा दिखाई जा रही है।

चलता है इसमें तरह-तरह के कोल्ड ड्रिंक --

बहुत अभी दिखाई पड़ रहे है यहाँ पे --

यहाँ पे का होता है यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बहुत --